ये सरस्वती माता का ये फोटो इमेज है जो बहुत सुंदर लग रहा है ये वीना की देवी है जो स्टूडेंट लाइन में बहुत मह्त्वपूर्ण आ जाता है ये विद्या के देवी जिसे हम कहते है।

और ये किले अब तो बोहोत ही जंगल इसमें दिख रहा है लेकिन बोहोत ही अच्छे किले हैं ।

किसी पौधे का पत्ते का इमेज है जोकि बहुत ही सूंदर देखने से पता चलता है और उनका कोई जवाब नहीं ह हरे रंग में --

ये किसी पहाड़ पर से लिए हुए इमेज है जिनके जिनमें खेत उत दिख रहे हैं ।

ये किसी गौशाला का इमेज है इनमे जिनमें गाय वाय बांधा हुआ है और बहुत ही संदर तरीका का ये इमेज देखने से लग रहा है गांव का सीन से पता चलता है।

और बहुत अच्छा इमेज के साथ इनको अपलोड किया गबा और अच्छा भी देखने से प्रतीत होता है ये किसी अच्छे सुन्दर तरीका से सजाया हुआ डेकोरेशन टाइप का कुछ दिखाई दे रहा जै --

ये किसी समुन्द्र का इमेज है जिसमें बोहोत बड़ा शिप और एक छोटा शिप भी नजर आ रहा है जो की बोहोत ही अच्छा शिप है और बोहोत ही बड़ा समुन्द्र है ।